पत्थरों के बीच में है ये --

लोहे का है और खुला हुआ है ।

दो औरते खड़ी हुई हैं जिन्होंने साड़ी पेहेन रखी है।

सामने वॉटरफॉल दिखाया गया है।

जो हरे और काले रंग के है पौधे भी है जो काफी छोटे है।

सामने छे लोग खड़े हुए हैं।

पास में घर भी बने हुए है जो हरे और लाल रंग --

बिल्डिंग के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है भोरे रंग का जिसपे सफेद रंग से प्रतीक लिखा हुआ है।

यहाँ की जो फर्श है।

बिल्डिंग के सामने का गेट है।